उके साथ ही एक टेबल लगा हुआ है जहां पे टेबल पे लोग बैठे हुए हैं।

घर के ऊपर बहोत सारे पिलर लगे हुए है। पीलारो के नीचे लोग बैठे हैं सामने ही कुछ लोगों को दिखाई दे रहे हैं।

और सामने से कुछ गाड़ियां भी यहां पर दिख रही हैं।

यह एक पार्क का व्यू है जोकि एक पार्क के पीछे एक स्विमिंग पूल है।

यह एक बहोत ही बड़ा एक हॉल है जिसमें की एक रेलवे स्टेशन है।

और कुछ लोग यहां पार्क में भी खड़े हैं जो की--

हम कर रहे कोई लोग लेट कर योगा कर रहे कोई बैठ कर योगा कर रहे हैं सामने ही --

अ लोग यहां पे रायता खा रहे है कुछ लोग चावल खा रहे है कुछ लोग नूडल्स है यहां पे रखे पड़े है।

ये एक जगराते की तस्वीर है जहां पर बहोत सारी मूर्तियां--

इसको देख रहे हैं और कुछ लोग यहां पर पर्दों से--

यहां पर तीन चार कुर्सीयां रखी हुई है और टेबल रखा हुआ है और इसी के साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं सामने से कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जोकि सामने खड़े हुए हैं।

यहां पर सामने ही कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो की गाड़ी में खड़े हैं काले रंग की गाड़ी जोकि बाहर खड़ी है।

बहोत ही अच्छा सा व्यू है जहां पर झील है एक साथ में एक एक्टिवा वाला खड़ा है जो कि तोड़ के--

पेड़ों के बीच से यहां पर सामने कुछ अं गाउएं है जोकि जहां पर पानी पीने आई हुई है।

एजेंसी के बाहर कुछ अं अं डेकोरेशन की गई है कुछ पार्टी चल रही है।

जोकि अं आइसक्रीम का बोर्ड लगाया गया है उसके साथ ही बहुत अच्छे तरीके से आइसक्रीम उसने--

एक रूम बनाया गया है जिसमें कि सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं।

एक डाकघर है डाकघर के बाहर कुछ साइकिल खड़ा है।